पोस्‍टर में लिखा है रेडीमेड एवं डिजाइनिंग कपड़े को सिलाई के लिए पधारे आशा बुटीक ।

इसके बालकनी का रंग नीला रंग का हैं और ऊपर में बहुत सुंदर से डिज़ाइन बनाये गए हैं।

यहां पर एक दुकान है जैसा कि मैं देख पा रही हूं दुकान के ऊपर लिखा है शामस सुपरमार्केट ।

यहाँ पर एक लड़का हाथ में बैडमिंटन का बैक पकड़ा हुआ है जैसा की मैं देख पा रही हूँ --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

जैसे की मैं देख पा रही हूँ घर के दोनों साइड दुकान है जैसे की मैं देख पा रही हूँ एक साइड --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस घर में बहुत सारी लाइट दिए हुए हैं रंग-बिरंगे लाल नीला हरा--

यहां पे जो खिड़की और दरवाजे सब कांच के बने हुए और उसका रंग नीला रंग का है।

जिसका रंग रंग-बिरंगा का है जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक ए.सी. है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ।

यहाँ पर चेयर और टेबल रखे गए हैं उसके ऊपर खाना सर्व किया गया है जैसे की मैं--

यहा पर बॉक्स रखे है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ बॉक्स के ऊपर भी लाइट लगे हुए है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ निचे सतरंजी बिछाया गया है सतरंजी का रंग बैंगनी रंग का है।

जैसे की मैं देख पा रही यह एक सुबह का समय है जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बोहोत सारे--

यहां पर बहुत सारे डब्बे में हैडफ़ोन रखे है और तरह तरह की मोबाइल के पार्ट्स रखे हुए है जैसे की मैं देख पा रही हूं ऊपर में एक पेड़ है मनीप्लांट का पेड़--

दुकान के बाहर बेलून से सजावट की गई बेलून का रंग गुलाबी और सफेद है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर दो टो--

यहां पर दो टोटो खड़ी है एक का रंग नीला और एक का रंग हरा है जैसा कि मैं देख पा रही यहां पर--

यहां पर बहोत सारे लोग हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस ऑफिस में सोफे भी रखे हुए हैं जिसका रंग काला रंग का है जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे जो खिड़की है--

जैसे कि मैं देख पा ड़ही हूं यह एक सुबह का समय है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे हरे-भरे पेड़-पौधे हैं ।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर नारियल का पेड़ भी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे फूल लगाए गए फूलों का रंग सफेद रंग का है।

बिहार जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो घर बना है उसका रंग नीला रंग का है।

जैसे की मै देख पा रही हू यह एक बहोत बड़ा सा स्कूल है जैसे कि मै देख पा रही हू यहां पर हरे भरे पेड़ पौधे है।

और यहाँ पर एक काउंटर बनाया दिखा घर में आओ झटपट कोटिंग करे फटफट --

यह आदमी नीला कलर का शर्ट और जींस पहना हुआ है जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने एक बहुत बड़ा घड़ी है जिसका--

पहले सामने में एक आदमी खड़ा है जो कैमरा लेके खड़ा है जैसे कि मैं देख पा रही यहां पर जो घर का रंग है सफेद रंग का है।

किरान जनरल स्‍टोर नतुल स्‍वाती पार्लर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ।

यहां पर छोटे छोटे शो प्लांट्स लगाए गए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने मैं एक डस्टबिन है जिसका रंग नीला रंग का है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक बहुत सुंदर से दुकान है जैसे की मैं देख पा रही हूं यहां सामने में--